आप शर्ट हाफ पेंट और एक कैप पहना हुआ है पानी बहुत अच्छे से गिर रहा है।

यह ऊपर ऊपर में मोबाइल नंबर दिया गया है स्पेशलिस्ट इन --

अं बूट काफि शोरूम लगा है ऊपर बूट है चप्पल है।

स्क्वायर कलर का सब पट्टी मारा हुआ है उसमें से एक डस्टबिन भी है चेयर भी है फ्लोर है सब है।

ये बहोत सारे बाइक आगे खड़ा हुआ है। उसे साइड में एक काल काला कलर का भी एक मर्सिडीज़ खड़ा हुआ है और अंदर जाने के लिए--

एक टो इलेक्ट्रिक पोल है ऊपर आसमान पूरा बादल मे छाया हुआ है --

उसके बाद ई लोग का एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का पेन है।

ये बहुत अच्छा पहाड़ दिख रहा है पहाड़ के ऊपर पेड़ भी लगा हुआ है आगे पेड़ लगा हुआ है।

ये एक फील्ड है जिसमे बहुत सारे लड़के लड़कियां है।

फील्ड में जो अं पेड़ वगैरा भी हैं।

ये एक दीवार है और दीवार को बहुत अच्छे तरीके से कलर --

वगैरा बना हुआ है पिंक कलर का बिल्डिंग है सफेद कलर का बिल्डिंग है।

और बादल भी चारों ओर मंडराये हुए है पानी बहोत अच्छा है पानी के अंदर भी पत्थर है पानी साफ है।

कलरफुल पिंक कलर का कलर लगाया गुवा लगाया गया है आगे--

और यहां पे एक पाइप वो लगा हुआ है जिसमें ब्लू कलर का पाइप लगा हुआ है लोहे का सब सामान--

है ऊपर पंखा चल रहा है पंख लगा हुआ--